इधर सामने कुछ लोग खड़े हैं दो चार टैक्सी है येलो कलर की पीछे दुकाने लगी हुई है।

लाल है कुछ ब्लैक है कुछ ब्राउन है कुछ पिंक कलर के है कुछ ग्रीन कलर के है कुछ स्याही कलर के है।

अं येलो कलर के कपड़े पहने हुए तो पीछे दो औरतें खड़ी है उनके साड़ियां पहनी हुई है अलग अलग कलर की।

इस फोटो के अंदर यहां पर एक बहुत बड़ा रूम है ऊपर पंखे लगे हुए है नीचे कुछ बेंच लगी हुई है बैंचों के बीच में एक छोटी सी स्टूल पड़ी है।

पड़ी है और एक कुर्सी पड़ी है येलो कलर के कुछ तगारी पड़ी है उसमें मसाला डाला हुआ पड़ा है।

उस आदमी के पीछे एक और आदमी है यहां नीचे लाल कलर की दरिया बिछाई हुई है।

एक फर्नीचर पड़ा हुआ है बाहर की साइड बेंच लगी हुई है यहां एक सामने दरवाजा है दरवाजे के इधर साइड कुछ सामान पड़ा है।

और आगे यहां पर इधर साइड में एक और आदमी खड़ा है बाहर दो पंखे पड़े हैं दो कैम्पर पड़े हैं एक हेलमेट पड़ा है एक --

इधर बाहर की साइड बैठने के लिए स्टूल बेंच लगी हुई है।